कुछ लोग पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में हमें एक पार्क नजर आ रहा है।

गार्डन के आसपास बहुत सारे फूल लगे हुए दिख रहे हैं।

इस दृश्य में हमें दुकान के बाहर बेंच पर बहुत सारी बुक्स रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

यह दृश्य हमें एक अकैडमी का नजर आ रहा है।

सोफे के पास एक गमले में पौधा लगा हुआ है।

इस दृश्य में हमें एक इलेक्ट्रॉनिक --

पीछे बहोत सारे अलग अलग रंगों के गुब्बारे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ बच्चे बैटमिंटन खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

रोड पर बहोत सारे ऑटो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

डॉक्टर के पास एक नर्स खड़ी हुईं हैं।

बहोत सारी लड़कियां योगा करती हुई दिखाई दे रही हैं।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

टेबल पर बहुत सारी पानी की बोतले और गिलास और मेनू रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

येहे तस्वीर हमें एक छोटे बच्चे की दिखाई दे रही है।